यहाँ एक शॉप है जिसमे सामने से एक शटर पड़ा हुआ है और एक शॉप है जो की अंदर से नाइ की--

चेयर ब्लैक कलर में है उसकी सीट जो की रेड कलर की उसके जो है स्टील से बने हुए है सामने की तरफ एक मिरर लगा हुआ है जिसमे--

नाई का सारा सामान रखा हुआ है एक सामने से रॉड जल रही है जो की--

बैठे जो की छोटे है कुछ एक लड़की खड़ी है जिसने रेड कलर की टी-शर्ट तथा एक लड़का खड़ा हुआ है जिसने ब्लू कलर की जींस तथा रेड कलर की--

एक बहोत बड़ा सा घर है जो की बहोत अच्छा सुन्दर सजा हुआ है ये घर जो है जो की सामने से दो गेट लगे हुए है और यहाँ पे एक तखत भी रखा हुआ है सामने से--

जो की बहुत ऊंचाई में है उसके चारो तरफ पानी ही पानी भरा हुआ है जो की समुद्र किनारे ऐसे लग रहा है कुछ पेड़ - पौधे भी बहुत सारे लगे हुए है।

पहाड़ पे जोकि बोहोत सारी ग्रीनरी है और यहाँ ढलान जैसे काई जैसा लग रहा है और ये बोहोत सारे सनकी --

बैट जिसपे एडिडास लिखा हुआ है और इसके पास में एक वाइट बॉल रखे हुए है और दूसरा बॉल जिसमें एस अस लिखा हुआ है उसके नीचे ऑरेंज बॉल रखी हुई है।

एक डांसिंग एकेडमी है जहां पे लोग डांस सिखने के लिए आए हुए है यहाँ पे जो बच्चे है जो--

अ कार्यालय उमावश एवं शिशु अस्पताल लिखा हुआ है यहाँ पे दो व्यक्ति जो की बाहर--

यहाँ स्टेज बनी हुए है जिसमें चारो तरफ पौधे ही पौधे रखे हुए है और यहाँ पे सामने एक गोल कलर का अ स्टेज सजा हुआ है।

फूलो से बहुत सुन्दर सजाया गया है और यहाँ पे आरती भी रखी हुई जो की प्लेट है जो की ताम्बे की प्लेट है उसमें चारों तरफ --